और केले के पत्ते के ऊपर रखकर फिर प्लेट में दिया गया है।

ऊपर की सजावट नारंगी सफेद और लाल फूलों से की गई है।

पीछे दो खजूर के पेड़ है और इमारत की बाई तरफ दीवार पर लाल स्याही से कुछ लिखा हुआ है।

सामने एक बुड्ढी औरत लाठी लेकर चल रही है।

और सामने भगवान की तस्वीर भी टंगी हुई है।

तरह तरह के फूल चढ़ाए गए हैं।

चित्र में एक बड़े से मैदान में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं।

और एक और गहरे लाल रंग का पर्दा लगा हुआ है।

पीछे और भी अन्य सामान रखे हुए--

यह चित्र किसी के जन्मदिन का है यहां पार्टी हो रही है।

जो किसी शादी या कार्यक्रम में जा रहे हैं।

इसके नीचे कई दुकानें है जिनके ऊपर रंग बिरंगे झंडे लगे हुए हैं।

बाहर गेट बंद है और कई गाड़ियां भी लगी हुई हैं।

दुकान के बाहर फूलों का तोरण लगा हुआ है।

यह चित्र किसी विद्यालय या किसी प्रतियोगिता का है।

स्प्रे बोटल रखी हुई है और एक आदमी अपने फोन से ये तस्वीर ले रहा है।

पीछे की दीवाल पीले रंग की है मछलियों का टैंक भी है और दो पौधे लगे हुए हैं।

और आपातकालीन स्थिति में आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर भी है।

और ज्यादातर यहां हरी सब्जियां मिल रही है।

बाहर कुछ लोग खड़े हैं और लड़कों ने कंधे पे बस्ता टांगा हुआ है।

और उसपे जमीन का कितना क्षेत्र है ये भी लिखा हुआ है।

नीचे भी थोड़े बहुत घास उगे हुए हैं और पीछे की तरफ एक रोशनी का खंभा भी है।

यहां एक्स रे दांतों का अस्पताल और एक नई की दुकान का भी बोर्ड है।

यह किसी रेस्ट्रा का चित्र है ऊपर नीले और सफेद रंग के बैलून लगे हुए हैं।

ऊपर में नानक ढाबा का बोर्ड भी लगा हुआ है।

और हॉस्पिटल पे दो बड़े बोर्ड लगे हुए हैं।